इनके इन पेड़ो के पीछे हमें एक इमारत नजर आ रही है जो की पीले और नीले रंग से पेन्ट की हुई है यह कई मंजिलों की इमारत--

इसके ऊपर वूडन का काम दिखाई दे रहा हैं ।